एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे काँच के शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे है ऊपर नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। जिसमे सफ़ेद अक्षर में लिखा हुआ दिखाई दे--

तेराह पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ के साथ बॉउंड्री भी दिखाई दे रहे है हरी घाँस दिखाई दे रही है।

एक होटल दिखाई दे रही है सामने ए_सी लगी हुई दिखाई दे रही यहा नीले कलर के काँच की खिडकिया दिखाई दे रही हैं। एक लाल बोर्ड --

हे रही तस्वीर लगी हुई दिखाई दे रही है। चार्जिंग सॉकेट दिखाई दे रहा तक्कीये रखे हुए दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रही है पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे है कुर्सिया रखी हुई दिखाई दे- टेबल दिखाई दे रही है बेड दिखाई दे रहा है।

यहा पर बिल्डिंगे दिखाई दे रहे है इसका कलर पीला है दिखाई दे रहा है सामने पार्क बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है पुल --